पास में प्याज थोडा कटा हुआ रखा है और कोई हाथ से पकड़ा हुआ है कटोरी में छोड़े करके चम्मच लगा के --

नीचे पानी दिखाई दे रहा है पानी मे कुछ लोग नहा रहे है।

कांच का दिख रहा है और कांच पर इस अम तारे बने हुए है लाइट चल रहा है।

यहाँ एक कमरा है कमरे मे मेज कुर्सी रखा हुआ है।

और भी कुछ दिखा उधर मेज दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और इस साइड दिवार के कुछ लिखा हुआ है एक साइड डिज़ाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

और इस मकान में दिख रहा है गेट काले रंग का बहार बाइक कड़ी हुई दिखाई दे रही है दो --

जैसा कि हमने देखा लाल कलर का फूल देख रहा है इसमें सफेद सफेद किनारे किनारे--

बड़े बड़े और सफेद रंग की दिवार दिख रही है और काले रंग का लोहे प --

यहां पर ताड़ बनाके कुछ टंगे हुए देख रहे है कुछ मीट मसाला कुछ--

कार दिख रहा है ऊपर भी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे--